और बच्चे और बड़े सभी स्टूडेंट --

और सभी खरीदारी कर रहे है।

यहां पर एक क्रेन खड़ी हुई है।

यहां पर बहुत सारे लोग--

और बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा है।

इस कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं।

और मजे कर सकता है।

और सभी बच्चे एन्जॉई कर रहीं हैं।